सामने की ओर आपको कुछ लाल और सफेद पर्दों से डेकोरेशन किया हुआ दिखाई दे रहा है।

जहाँं पे और आप आगे आते वक्त यहाँ पे कुछ छोटे-मोटे दुकान भी दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन में अलग-अलग पेड़ प्रकार के पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ों के पीछे यहाँ पे आपको काफी स ऊंची-ऊंची इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।

गार्डन के पीछे काफी ऊँची-ऊँची इमारतें भी आप को दिखाई दे रही है।

कुछ गेट यहां पे का-कांच के भी दिखाई दे रहे है जोकि खुले हुए है अंदर भी काफी सारे लाइट लगे हुए है----